मुझे इस फोटो में सामने की ओर कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे--

यह हरे पेड़ पौधे लगे लगाए--

सामने की ओर एक महंगा टप पानी कप दिखाई दे री हो--

हरे हरे पेड़ लगाए गए है।

बना हुआ दिखाई दे रहा है कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और ऊपर ऊपर जो गेंदों के फूलों से सजाया गया है।

आजू बाजू हरे हरे भरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे हैं।

सामने वो किसी पत्थर से बने ल बने हुए दिखाई कुछ लोग इधर तरफ पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है।

एक नदी में इस नाव चलती हुई दिखाई दे रही ऊपर की ओर--

इसमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आजू बाजू के साइड

दिन का समय दिखाई दे रहा है समय को अभी तक ।